भाई मैं जिम आया था। मैं इन भाई को देख रहा हूँ।

इधर से निकला हुआ जा रहा था तो ये मार्केट --